इस इमेज में मुझ एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी रोशनी लगी हुई हैसामने एक दिल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे रोड दिखाई दे रहा है खंबे दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है रोड पर एक झोपड़ी सी दिखाई दे रही है। और --

इस इमेज मे मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है सामने एक मस्जिद भी बनी हुए दिखाई दे रही है बॉउंड्री दिखाई दे रही है रेता दिखाई दे रही है हरे हरे पेड़ से दिखाई दे रहे है एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है एक --

और बहुत सारी किताबे दिखाई दे रही है एक मोटा नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है बेंच रखी दिखाई दे रही है दुकान के बाजू में और दुकाने लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक टी.वी. लगी हुई दिखाई दे रहा है ड्रेस कॉम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस ईमेज में मुझे शर्ट टंगी हुई दिखाई दे रही है हम्म सफ़ेद धारी सी वाली और ब्लैक धारी वाली और लाइट से कलर की उनमे मेन्सवियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे है।